हमको यहाँ पे दिख रहा मछली दिख रहा प्लेट दिख रहा बाल्टी है और बड़ा सा टब है जिसमे मछली रखा हुआ हैऔर वहां पे हिटा का कुछ बना हुआ है और एक आदमी है।

मॉल है जहाँ बहुत सारे आचार रखे हुए हैं कुरकुरे का पैकेट रखा है जूस का पैकेट रखा है पीछे कुछ बिजली का सामान रखा हुआ है कुछ पाइप वगैरा रखा हुआ है।

बिल्डिंग बनने का यहाँ पे काम चल रहा है बहुत सारे सीमेंट वगैरा बालू रखे हुए हैं और आस-पास छड़ लगा हुआ है और आस-पास बिल्डिंग पीछे दिख रहीं है पेड़-पौधे दिख रहे हैं ।

एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे एक लोग सेल्फी ले रहे है और पेट्रोल का सामान रखा हुआ है और एक बड़ा सा कुछ लाइट का बना हुआ जिसमे हाथ बना हुआ और उसपे लिखा हुआ है पेट्रोल और एक गोल सा दीवार का कुछ बना हुआ है उसके बीच में बहुत सारी गिट्टी वगेरा बालू रखे हुए।

एक दवाई का शॉप है जिसमे बोहत तरह की दवाई रखी हुई है आस पास बहुत सारे दवाई है नीले पीले कलर के और एक बड़ा सा अलमारी बना हुआ है जिसमे लाइट वगेरा लगे हुए है।

लोग बैठे हुए हैं पेड़ के पास कुछ लोग चल रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ हैं और एक टॉवर है आस-पास घास फूस है।